और गाड़ी फाड़ी एक भी नहीं है। जैसा लग रहा --

पेड़ हरे-हरे पेड़ पौधे काफी बड़े बड़े लगाए हुए हैं। कॉलेज बहुत अच्छा म --

एक परचूनी दुकान है। इसमें सामान भरा पड़ा है चीनी विनी डब्बे कुरकुरे।

और काफी बड़ी दुकान दिखाई दे रही है बाहर। टीन भी पड़ी हुई है प्लास्टिक वाली और कई तीन-चार पुतले भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बाहर। दुकान के बाहर --

गांव के किनारे एक साइड से मम्म सीमेंट की ग्रिल सी लगी हुई है। वहां एक आदमी साइकिल लेकर घूमने आया भी है। काफी अच्छा माहौल है बादल भी है।

साइड वाइड पौधे खजूर के पौधे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बोत छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड । सामने एक पहाड़ सा हमें दिखाई दे रहा है। काफी सुन्दर सा लग रहा है माह --

एक बड़ा विद्यालय वेस्ट में दिखाई दे रहा है। जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे बंद सा हो।

उम्म पेड़ के पास खड़े होके हम देख रहे हैं जैसे कि भी खड़ी हुई है। एक तालाब सा है जिसमें पानी भरा पड़ा है। कई दिन पुराना लाल लाल सा दिखाई दे रहा है हमें।

जैसा कि हम देख रहे हैं एक दुकान है जिसका महूरत किया गया है। काफी अच्छी दुकान ए.सी. भी लगी हुई है। पंखे भी हैं।